यह कच्चा रोड है बड़ा-सा गेट है जहा हेलोजन लाइट लगाया गया है।

आजु-बाजू छोटी-छोटी घास है बड़े-बड़े पेड़-पौधे है खुला आसमान है बादल है मिट्टी है व्हाइट बाउंड्री है।

यह एक मॉल है छोटा जहा कई सारी टीशर्टे नजर आ रही है।

ऊपर टीन है पाइप है खिड़की है मिट्टी है एक ड्रम है दो तीन ड्रम है उजाला है।

यह एक अपार्टमेंट है गैलरी है खिड़कियां है दरवाजे है एक बड़ी-सी बाउंड्री दिवाल है डस्ट्बिन है।

''यह एक शॉप है जहाँ मेंस कपड़े दिख रहे है खोखे है बैनर है पोस्टर है लकड़ी के आलमारी बनाई गई है उसपे ये सब चीजें रखी गई है।''

यह एक सोफ़ा सेट है जिसे कलर किया गया है यह लकड़ी का बना हुआ है।

जूते है टी शर्ट है नाईटी है।

टेबल है अंडे है अन्दर फ्रिज है चेंनल गेट है।

छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं आम का झाड़ भी नजर आ रहा है ऊपर आसमान है बदल है एक छोटी लड़की भी नजर आ रही है एक लेडिस भी खड़ी हुई दिख रही है।